इसमें से यहां पर बहुत सारा गाजर और खीरा शिमला मिर्च भिंडी रखे गए हैं।

चाहे किसी समारोह के दौरान लिया गया तस्वीर है।

और उधर एक बहोत बिल्डिंग भी बनाया है।

और टिशु और बोतलें रखी गई है टेबलो पर।

उधर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं और उधर कुछ मेंबर्स और भी हैं जो बगल बगल में अपने अपने कुर्सियों पर बैठे हैं।

साइकिल नीले कलर के हैं तो कुछ ब्लैक कुछ लाल कलर के भी हैं।

से कसा है ऊपर में छत है।

यह एक किसी थाना का दृश्य है।

सभी ने फुल पैंट सैट पहना हुआ है।

ये तीनों व्यक्ति ने सफेद कलर के पहने हैं और एक व्यक्ति ने ब्लू ।

में तार पार किया गया है।

एक लोहा का बहुत ऊंचा खंभा गाढ़ा है जिस पर लाइट लगा है।

इसमें से आ नीचे में तो मूर्ति के चित्र बनाए हैं।

और एक टेबल पर कुछ कुछ सामान मांगाये हुए हैं।

यह एक किसी रोड के साइड में एक मॉल का दृश्य है।

इस पे लिखा भी है टाइटन बाहर में--

व्यक्ति ने अतरंगी कलर के टीशर्ट पहना हुआ हैं जो सफेद हरे नीले कलर हैं।

सबके पास एक एक लाइट जली हुई है।

एक और भी औरत खड़ी है।

इसमें से यहां पर आगे में लिखा है हेल्थ प्वाइंट हॉस्पिटल ।

टेबल पर टिशू प्लेट्स और ग्लास रखे गए है।

इसमें से यहां पर एक व्यक्ति जो माथे में एक टोपी और जैकेट पहन कर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यह एक किसी आर अर्जुन के नामक कोई शॉप का दृश्य है।

अंदर में पंखे लाइट जले हुए हैं।

जो सही तरह से कटे हुए हैं उसकी कटाई छटाई होती है।

घर में एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है उधर।

और दीवार को सफेद कलर से रंग भी गया है।

बहुत बड़ी बड़ी सफेद कलर की जली हुई लाइटें।